यह फोटो मिनी स्टेडियम के पास एस.बी.आई बैंक के ए.टी.एम की हैं ए.टी.एम में एक सामने मशीन लगी हुई हैं जिससे हम चौबीसो घंटे पै अपने अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं।

जिसके ऊपर पूल के सामने एक साइकिल पे एक लड़का फूल बेचता दिखाई दे रहा सामने एक--

सामने कुछ खाने-पीने का भी सामान रखा हुआ हैं टेबल के ऊपर गिलास और टिश्यू पेपर रखी हुई हैं सामने एक केशियर बैठा हुआ हैं--

यह बस अपनी-अपनी जगह को रवाना होने के लिए तयार है सामने एक आदमी--

सामने वाली इसमें है जहाँ पे पेट्रोल पंप लेने के लिए एक गाड़ी अंदर खड़ी हुई दिखाई दे रही है। सामने के रस्ते में एक गड्ढे है। बहोत सारे जहाँ पे पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा हैं।

इसका दरवाजा लाल कलर का पुरी बिल्डिंग भी लाल कलर कि है ऊपर एक क्रॉस का साइन बना है जो की क्रिस्चियन का कुछ तो प्रतीक--

अलग-अलग मॉडर्न इक्विपमेंट्स जो कि वर्कआउट करने में यूज़ होते हैं नीचे वूडन की फ्लोरिंग हैं ऊपर --